ये खेत बहोत बड़ा खेत है इस खेत में कुछ पेड़ पौधा लगाया गया है उस खेत के आगे बहोत बड़ा वृक्ष है।

ट्रेक में लोडिंग कर रहा है व्यक्ति लोग व्यक्ति लोग गरीब घर से होगा इसलिए मजबूत कर रहा हैं --

इस समय स्टेशन पर रेलवे भी रेलवे वाले कुछ तार का बनाया हुआ निकला लगा दिया गया--

इसमें एक लाइट भी लगा है जो करेंट वाली समुद्र में लाइट बार सकते हैं।